और इस रूम में दो दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

और बिस्तर के ऊपर भी दो पिलो और मैट्ट्रेस दिखाई दे रहा है।

और आसमान भी इतना क्लियर सा बढ़िया से दिखाई दे रहे है।

और ऊपर में कपड़ा लोग पहना के है उस को।

और उस मकान के बरमदा में बहुत सारा फ्लॉवर्स लोग लगा के दिखाई दे रहा--

और फूल भी बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप का दिखाई दे रहा।

और सामने में टेबल लोग भी दिखाई दे रहे--

और शीशा से बनाया हुआ गया दिखाई दे रहा है।

और उस बिल्डिंग का अंदर में बहोत सारा डेकोरेशन करके दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम दिखाई दे रहा है जो कि स्टोर रूम जैसा दिखाई दे रहा है।

और दो खिड़की को ढकने के लिए कर्टेल्स भी लगाकर दिखाई दे रा--

और यहां फ्लोर भी टाइल्स दिखाई दे रहे--

और यहां में बहुत सारा आदमी लोग भी दिखाई दे रहा हैं।

और बहुत सारा ऑटो चला के दिखाई दे रहा हैं।

इधर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेटस दिखाई दे रहा है।

यह एक लरकी का फोटो दिखाई दे रहे--

सामने में जो आईना रखा गया है वह में एक आदमी भी दिखाई दे रा है।

और यहां बैठने के लिए कुर्सी भी तीन दिखाई दे रहे।

और टेबल के ऊपर बहुत सारा रजिस्टर भी दिखाई दे रहा है।

और वो लोग के जस्ट सामने में रास्ता भी दिखाई दे रहा--

और उसी के बगल में पेड़ लोग भी नजर आ रहा है।

और पहाड़ लोग भी दी नजर आ रहा है।

और यहां में बहुत सारा अदरक भी दिखाई दे रहा है।

और दीवार भी सफेद कलर का दिखाई दे रहे हैं।

इस बिल्डिंग के ऊपर डॉल संजना मेडिकल्स लिख के है।

यहां में एक मकान दिखाई दे रहे हैं।